इक में क्रॉम्पटन लिख के ब्लू कलर के लाइटिंग के साथ ऊपर में दिखाया गया है और जि --

वाइन शॉप है। वहां में एक शख्स खड़ा हुआ हमें नजर आ रहा है।

सामने बहुत सारे शख्स अंदर में ब्लैक और रेड कपड़ा के--

उसके नंबर प्लेट सब अलग अलग है और यहां में बलूंस अलग अलग कलर से बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है।

और बहुत सारे फुल पॉट अलग अलग कलर के हमे देखने को मिल रहा है।

मुझे एक बड़ा सा फील्ड देखने को मिल रहा है जहां पे बहुत सारे इंसान है।

इस फोटो में हमें एक शॉप दिखाया गया है।

बहोत सारे कम्युनिटी इंगेजमेंट भी हमें देख रहे हैं क्योंकि बहोत सारे लोग आए हुए इस जगह पर और--

बहुत सारे पेड़ हमें देखने को मिल रहा है और पहाड़ भी हमें देखने को मिल रहा है इधर पर।

इस बिल्डिंग को गेट से सिक्योर करने वाला गेट भी हमें देखने मिल रहा--

आगे में दो तीन व्हाइट कलर के कार हमें देखने को मिल रहा है।

आसमान हमें देखने को मिल रहा है।

ऊपर में पानी का बोतल और बहुत सारे सामान अच्छी तरफ से ऑर्गनाइज कर के रखा हुआ हमे नजर आ रहा है।

इस पिक्चर में हमें जगह दिखाया गया है जो की एक अच्छी तरह से रखा गया है सजा कर।

और ये शख्स यहां पर बेयरफुट ही खड़े हैं इस रॉक पर और उसका जो कपड़े है वो बहुत कैजुअल तरीके के कपड़े वो पहने हुए है।

शॉवर करने का जगह भी हमें देखने को मिल रहा है।

ये दो सर उनके इंटरव्यूअर्स --

और यहां में नीचे में दो सख्श खड़ा हो खड़ा है और उसके आगे में बहुत सारे स्कूटी --

उस काउंटर मे बैठा हमे देखने को मिल रहा है।

एक लेपतोप भी यहां देखने को मिल रहा है।